पीछे खिड़की लगी हुई है उपर छत दिखाई दे रहा है पीछे भी दीवार बनी हुई है नीचे फर्श है।

पेड़ भी लगे हुए है बड़े बड़े और छोटे छोटे बाजू में पुल साइड की तरह लग रहा है।

टेंट की टेंट भी लगा है उपर छत भी दिखाई दे रही है।

नीचे ब्लैक फर्श है सामने व्हाइट टाइल्स वाला फर्श है।

वहा पे बहुत सारी बिल्डिंगस भी बनी हुई है एक टावर लगा हुआ है और पेड़ भी लगे हुए है।